मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है
आज कारगिल विजय दिवस है
21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था
साथियो कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता
पाकिस्तान ने बड़ेबड़े मनसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आन्तरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था
भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था लेकिन कहा जाता है ना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
यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना
ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं इसीलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई उसे पूरी दुनिया ने देखा
आप कल्पना कर सकते हैं ऊचें पहाडों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएँ हमारे वीर जवान लेकिन जीत पहाड़ की ऊँचाई की नहीं भारत की सेनाओं के ऊँचे हौंसले और सच्ची वीरता की हुई
साथियो उस समय मुझे भी कारगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है
मैं देख रहा हूँ कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे है
सोशल मीडिया पर एक हैशटैग कोरेजिनकारगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहें हैं जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहें हैं
मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथसाथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूँ जिन्होंने माँभारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया
मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिनभर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियाँ वीरमाताओं के त्याग के बारे में एकदूसरे को बताएँ शेयर करें
मैं साथियो आपसे एक आग्रह करता हूँ आज
एक वेबसाइट है wwwgallantryawardsgovइन आप उसको ज़रूर विसित करें
वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी
आप ज़रूर इस वेबसाइट को विसित कीजिये और मैं तो कहूँगा बारबार कीजिये
साथियो कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने लालकिले से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है
अटल जी ने तब देश को गाँधी जी के एक मंत्र की याद दिलायी थी
महात्मा गाँधी का मंत्र था कि यदि किसी को कभी कोई दुविधा हो कि उसे क्या करना क्या न करना तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए
उसे ये सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहा है उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी
गाँधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि कारगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है ये मंत्र था कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी
आइए अटल जी की आवाज़ में ही उनकी इस भावना को हम सुनें समझें और समय की मांग है कि उसे स्वीकार करें
हम सभी को याद है कि गाँधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था
उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी
कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी
साथियो युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं करते हैं उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है
ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसीलिए हमारा आचार हमारा व्यवहार हमारी वाणी हमारे बयान हमारी मर्यादा हमारे लक्ष्य सभी कसौटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कह रहे हैं उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े उनका सम्मान बढ़े
राष्ट्र सर्वोपरी का मंत्र लिए एकता के सूत्र में बंधे देशवासी हमारे सैनिकों की ताक़त को कई हज़ार गुणा बढ़ा देते हैं
हमारे यहाँ तो कहा गया है न संघे शक्ति कलौ युगे
कभीकभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुक्सान करती हैं
कभीकभी जिज्ञासावश फॉरवर्ड करते रहते हैं
पता है गलत है ये करते रहते हैं
आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है
हमें भी अपनी भूमिका देश की सीमा पर दुर्गम परिस्तिथियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तय करनी होगी
मेरे प्यारे देशवासियो पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है
आज हमारे देश में रिकवरी रते अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्युदर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफ़ी कम है
निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है
लेकिन साथियो कोरोना का खतरा टला नहीं है
कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है
हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है
हमें यह ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था इसीलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है
चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना दो गज की दूरी लगातार हाथ धोना कहीं पर भी थूकना नहीं साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं
कभीकभी हमें मास्क से तकलीफ होती है और मन करता है कि चेहरे पर से मास्क हटा दें
बातचीत करना शुरू करते हैं
जब मास्क की जरूरत होती है ज्यादा उसी समय मास्क हटा देते हैं
ऐसे समय मैं आप से आग्रह करूँगा जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फील होती हो मन करता हो उतार देना है तो पलभर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिये उन नर्सों का स्मरण कीजिये हमारे उन कोरोना वारियर्स का स्मरण कीजिये आप देखिये वो मास्क पहनकर के घंटो तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं
आठआठ दसदस घंटे तक मास्क पहने रखते हैं
क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी थोड़ा सा उनका स्मरण कीजिये आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जरा भी कोताही ना बरतनी है और न किसी को बरतने देनी है
एक तरफ हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़ना है तो दूसरी ओर कठोर मेहनत से व्यवसाय नौकरी पढाई जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं उसमें गति लानी है उसको भी नई ऊँचाई पर ले जाना है
साथियो कोरोना काल में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है
गांवो से स्थानीय नागरिकों के ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं
जम्मू में एक ग्राम त्रेवा ग्राम पंचायत है
वहाँ की सरपंच हैं बलबीर कौर जी
मुझे बताया गया कि बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में 30 बेद का एक क्वारंटाइन सेंटर बनवाया
पंचायत आने वाले रास्तों पर पानी की व्यवस्था की
लोगों को हाथ धोने में कोई दिक्कत न हो इसका इंतजाम करवाया
इतना ही नहीं ये बलबीर कौर जी खुद अपने कन्धे पर स्प्रे पम्प टांगकर वॉलंटियर्स के साथ मिलकर पूरी पंचायत में आसपास क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम भी करती हैं
ऐसी ही एक और कश्मीरी महिला सरपंच हैं
गान्दरबल के चौंटलीवार की जैतूना बेगम
जैतूना बेगम जी ने तय किया कि उनकी पंचायत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेगी और कमाई के लिए अवसर भी पैदा करेगी
उन्होंने पूरे इलाके में फ्री मास्क बांटे फ्री राशनration बांटा साथ ही उन्होंने लोगों को फसलों के बीज और सेब के पौधे भी दिए ताकि लोगों को खेती में बागवानी में दिक्कत न आये
साथियो कश्मीर से एक और प्रेरक घटना है यहाँ अनंतनाग में म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट हैं श्रीमान मोहम्मद इकबाल उन्हें अपने इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर की जरूरत थी
उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि मशीन दूसरे शहर से लानी पड़ेगी और कीमत भी होगी छ लाख रूपये तो श्रीमान इकबाल जी ने खुद ही प्रयास करके अपने आप स्प्रेयर मशीन बना ली और वो भी केवल पचास हज़ार रूपये में ऐसे कितने ही और उदाहरण हैं
पूरे देश में कोनेकोने में ऐसी कई प्रेरक घटनाएँ रोज सामने आती हैं ये सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं
चुनौती आई लेकिन लोगों ने उतनी ही ताकत से उसका सामना भी किया
मेरे प्यारे देश्वासियो सही अप्रोच से सकारात्मक अप्रोच से हमेशा आपदा को अवसर में विपत्ति को विकास में बदलने में बहुत मदद मिलती है
अभी हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश के युवाओंमहिलाओं ने अपने टैलेंट और स्किल के दम पर कुछ नये प्रयोग शुरू किये हैं
बिहार में कई वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाना शुरू किया है और देखतेहीदेखते ये खूब पॉपुलर हो गये हैं
ये मधुबनी मास्क एक तरह से अपनी परम्परा का प्रचार तो करते ही हैं लोगों को स्वास्थ्य के साथ रोजगारी भी दे रहे हैं
आप जानते ही हैं नॉर्थ ईस्ट में बम्बू यानी बाँस कितनी बड़ी मात्रा में होता है अब इसी बाँस से त्रिपुरा मणिपुर असम के कारीगरों ने हिघ क्वालिटी की पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स बनाना शुरू किया है
बम्बू से आप अगर इनकी क्वालिटी देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा कि बाँस की बोतलें भी इतनी शानदार हो सकती हैं और फिर ये बोतलें इकोफ्रेंडली भी हैं
इन्हें जब बनाते हैं तो बाँस को पहले नीम और दूसरे औषधीय पौधों के साथ उबाला जाता है इससे इनमें औषधीय गुण भी आते हैं
छोटेछोटे स्थानीय प्रोडक्ट्स से कैसे बड़ी सफलता मिलती है इसका एक उदहारण झारखंड से भी मिलता है
झारखंड के बिशुनपुर में इन दिनों 30 से ज्यादा समूह मिलकर के लेमोन ग्रास की खेती कर रहे हैं
लेमोन ग्रास चार महीनों में तैयार हो जाती है और उसका तेल बाज़ार में अच्छे दामों में बिकता है
इसकी आजकल काफी माँग भी है
मैं देश के दो इलाकों के बारे में भी बात करना चाहता हूँ दोनों ही एकदूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं और अपनेअपने तरीक़े से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ हटकर के काम कर रहे हैं एक है लद्दाख और दूसरा है कच्छ
लेह और लद्दाख का नाम सामने आते ही खुबसूरत वादियाँ और ऊँचेऊँचे पहाड़ों के दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं ताज़ी हवा के झोंके महसूस होने लगते हैं
वहीँ कच्छ का ज़िक्र होते ही रेगिस्तान दूरदूर तक रेगिस्तान कहीं पेड़पौधा भी नज़र ना आये ये सब हमारे सामने आ जाता है
लद्दाख में एक विशिष्ट फल होता है जिसका नाम चूली या एप्रिकॉट यानी खुबानी है
ये फसल इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बदलने की क्षमता रखती है परन्तु अफ़सोस की बात ये है सप्लाई चैन मौसम की मार जैसे अनेक चुनौतियों से ये जूझता रहता है
इसकी कमसेकम बर्बादी हो इसके लिए आजकल एक नए इनोवेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ है एक दुआल सिस्टम है जिसका नाम है सोलार एप्रिकॉट ड्रायर एंड स्पेस हीटर
ये खुबानी और दूसरे अन्य फलों एवं सब्जियों को जरुरत के अनुसार सुखा सकता है और वो भी हाइजिनिक तरीक़े से
पहले जब खुबानी को खेतों के पास सुखाते थे तो इससे बर्बादी तो होती ही थी साथ ही धूल और बारिश के पानी की वजह से फलों की क्वालिटी भी प्रभावित होती थी
दूसरी ओर आजकल कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं
बहुत से लोग जब सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कच्छ और ड्रैगन फ्रूट्स
लेकिन वहाँ आज कई किसान इस कार्य में जुटे हैं
फल की गुणवत्ता और कम ज़मीन में ज्यादा उत्पाद को लेकर काफी इनोवेशन किये जा रहे हैं
मुझे बताया गया है कि ड्रैगन फ्रूट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है विशेषकर नाश्ते में इस्तेमाल काफी बढ़ा है
कच्छ के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रैगन फ्रूट्स का आयात ना करना पड़े यही तो आत्मनिर्भरता की बात है
साथियो जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं इनोवेटिव सोचते हैं तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिनकी आमतौर पर कोई कल्पना नहीं करता जैसे कि बिहार के कुछ युवाओं को ही लीजिये
पहले ये सामान्य नौकरी करते थे
एक दिन उन्होंने तय किया कि वो मोती यानी पर्ल्स की खेती करेंगे
उनके क्षेत्र में लोगों को इस बारे में बहुत पता नहीं था लेकिन इन लोगों ने पहले सारी जानकारी जुटाई जयपुर और भुवनेश्वर जाकर ट्रेनिंग ली और अपने गाँव में ही मोती की खेती शुरू कर दी
आज ये स्वयं तो इससे काफ़ी कमाई कर ही रहे हैं उन्होंने मुजफ्फरपुर बेगूसराय और पटना में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को इसकी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है
कितने ही लोगों के लिए इससे आत्मनिर्भरता के रास्ते खुल गए हैं आई
साथियो अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है
मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि कई लोग और संस्थायें इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहें हैं
कई लोग इसे वोकल फोर लोकल से भी जोड़ रहे हैं और बात भी सही है
हमारे पर्व हमारे समाज के हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े उसका भी पर्व खुशहाल हो तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है आई सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुतबहुत शुभकामनाएं आई
साथियो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है
भारत का हैंडलूम हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ो वर्षों का गौरवमयी इतिहास समेटे हुए है
हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादासेज्यादा उपयोग करें बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादासेज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए आई भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है इसमें कितनी विविधता है ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा आई
साथियो विशेषकर मेरे युवा साथियो हमारा देश बदल रहा है
कैसे बदल रहा है कितनी तेज़ी से बदल रहा है कैसेकैसे क्षेत्रों में बदल रहा है एक सकारात्मक सोच के साथ अगर निगाह डालें तो हम खुद अचंभित रह जायेंगे
एक समय था जब खेलकूद से लेकर के अन्य सेक्टर्स में अधिकतर लोग या तो बड़ेबड़े शहरों से होते थे या बड़ेबड़े परिवार से या फिर नामीगिरामी स्कूल या कॉलेज से होते थे
अब देश बदल रहा है
गांवों से छोटे शहरों से सामान्य परिवार से हमारे युवा आगे आ रहे हैं
सफलता के नए शिखर चूम रहे हैं
ये लोग संकटों के बीच भी नएनए सपने संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं
कुछ ऐसा ही हमें अभी हाल ही में जो बोर्ड एक्साम्स के रिजल्ट आये उसमें भी दिखता है
आज मन की बात में हम कुछ ऐसे ही प्रतिभाशाली बेटेबेटियों से बात करते हैं
ऐसी ही एक प्रतिभाशाली बेटी है कृतिका नांदल
कृतिका जी हरियाणा में पानीपत से हैं
हेलो कृतिका जी नमस्ते
नमस्ते सर
इतने अच्छे परिणाम के लिए आपको बहुतबहुत बधाई
धन्यवाद सर
और आपको तो इन दिनों टेलिफोन लेतेलेते भी आप
थक गयी होंगी
इतने सारे लोगों के फ़ोन आते होंगे
जी सर
और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व महसूस करते
होंगे कि वो आपको जानते हैं
आपको कैसा लग रहा है
सर बहुत अच्छा लग रहा है
पेरेंट्स को प्राउड फील
करा के खुद को भी इतना प्राउड फील हो रहा है
अच्छा ये बताइये कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है
सर मेरे मम्मी है सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी
अच्छा आप मम्मी से क्या सीख रही हो
सर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें देखी हैं
फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रोंग हैं सर
उन्हें देखदेख के इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूँ
माँ कितनी पढ़ीलिखी हैं
सर बा किया हुआ है उन्होंने
बा किया हुआ है
तो माँ आपको सिखाती भी होगी
सिखाती हैं दुनियादारी के बारे में हर बात
बताती हैं
वो डांटती भी होगी
जी सर डांटती भी हैं
अच्छा बेटा आप आगे क्या करना चाहती हैं
सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं
देखिये डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है
डिग्री तो प्राप्त कर लेगी क्योंकि आप बड़ी तेजस्वी
हो बेटा लेकिन डॉक्टर का जीवन जो है वो समाज के लिये बहुत समर्पित होता है
उसको कभी रात को चैन से कभी सो भी नहीं सकता
कभी पेशेंट का फ़ोन आ जाता है अस्पताल से फ़ोन आ जाता है तो फिर दौड़ना पड़ता है
यानी एक प्रकार से 24×7 थ्री सिक्सटी फाइव डेज
डॉक्टर की ज़िंदगी लोगों की सेवा में लगी रहती है
येस सिर
और ख़तरा भी रहता है क्योंकि कभी पता नहीं
आजकल के जिस प्रकार की बीमारियाँ हैं तो डॉक्टर के सामने भी बहुत बड़ा संकट रहता है
अच्छा कृतिका हरियाणा तो खेलकूद में पूरे हिन्दुस्तान
के लिये हमेशा ही प्रेरणा देने वाला प्रोत्साहन देने वाला राज्य रहा है
हाँजी सर
तो आप भी तो कोई खेलकूद में भाग लेती हैं क्या
कुछ खेलकूद पसंद है क्या आपको
सर बास्केटबाल खेलते थे स्कूल में
अच्छा आपकी ऊंचाई कितनी है ज्यादा है ऊंचाई
नहीं सर पांच दो की है
अच्छा तो फिर तुम्हारे खेल में पसंद करते हैं
सर वो तो बस पैशन है खेल लेते हैं
अच्छाअच्छा
चलिये कृतिका जी आपके माताजी को
मेरी तरफ से प्रणाम कहिये उन्होंने आपको इस प्रकार के योग्य बनाया
आपके जीवन को बनाया
आपकी माताजी को प्रणाम और आपको बहुतबहुत बधाई बहुतबहुत शुभकामनाएं
धन्यवाद सर
आइये अब हम चलते हैं केरला एर्नाकुलम एर्नाकुलम
केरला के नौजवान से बात करेंगे
हेलो सर नमस्कार
सो विनायक कांग्रेचुलेशन
हाँ थांक यू सिर
शाबाश विनायक शाबाश
हाँ थांक यू सिर
होव इस थे जोश
डीओ यू प्ले एनी स्पोर्ट
बैडमिंटन
इन आ स्कूल ओर यू हेव एनी चांस टो टेक आ ट्रेनिंग
नो इन स्कूल वे हेव अलरेडी गेट सोमे ट्रेनिंग
फ्रॉम और टीचर्स
सो थाट वे गेट अपॉर्च्यूनिटी टो पार्टिसिपेट आउटसाइड
फ्रॉम थे स्कूल इत्सेल्फ
होव मैनी स्टेट्स यू हेव विजिटेड
आई हेव विजिटेड ओनली केराला एंड तमिलनाडु
ओनली केराला एंड तमिलनाडु
सो वाउल्ड यू लाइक टो विसित देल्ही
हाँ सिर नोव आई एएम एप्लाइंग इन देल्ही यूनिवर्सिटी फोर माय
हाइर स्टडीज
वाह सो यू एआरई कमिंग टो देल्ही
हाँ येस सिर
टेल मे डीओ यू हेव एनी मेसेज फोर फेलो स्टूडेंट्स
व्हो विल गिव बोर्ड एक्साम्स इन फ्यूचर
हार्ड वर्क एंड प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन
सो परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट
हाँ सिर
विनायक आई वाउल्ड लाइक टो नोव यूर हॉबीज
बैडमिंटन एंड थान रोइंग
सो यू एआरई एक्टिव ओन सोशल मीडिया
नोट वे एआरई नोट एलोव्ड टो उसे एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटेम्स ओर
गैजेट्स इन थे स्कूल
सो यू एआरई लकी
वेल विनायक कांग्रेचुलेशंस अगैन एंड विश यू अल्ल
थांक यू सिर
आइये हम उत्तर प्रदेश चलते हैं
उत्तर प्रदेश में अमरोहा के श्रीमान् उस्मान सैफी से बात करेंगे
हेलो उस्मान बहुतबहुत बधाई आपको ढेरोंढेरों बधाई
थांक यू सिर
अच्छा आप उस्मान बताइये कि आपने जो चाहा था
वही रिजल्ट मिला कि कुछ कम आया
नहीं जो चाहा था वही मिला है
मेरे पेरेंट्स भी
बहुत खुश हैं
वाह अच्छा परिवार में और भाई भी बहुत इतने ही
तेजस्वी हैं कि घर में आप ही हैं जो इतने तेजस्वी हैं
सिर्फ मैं ही हूँ मेरा भाई वो थोड़ा सा शरारती है
हाँ हाँ
बाकी मुझे लेकर बहुत खुश रहता है
अच्छा अच्छा
अच्छा आप जब पढ़ रहे थे तो
उस्मान आपका पसंदीदा विषय क्या था
मैथमेटिक्स
अरे वाह तो क्या मैथमेटिक में क्या रूचि रहती
थी कैसे हुआ किस टीचर ने आपको प्रेरित
जी हमारे एक सब्जेक्ट टीचर रजत सर
उन्होंने मुझे
प्रेरणा दी और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स शुरू से ही मेरा अच्छा रहा है और वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी
तो जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा इंटरेस्ट आता
है तो इसलिए मेरा फेवराइट सब्जेक्ट
हूँ हूँ
आपको मालूम है एक ओनलाइन वेदिक
मैथमेटिक्स के क्लासेस चलते हैं
हाँ कभी ट्राय किया है इसका
नहीं सर अभी नहीं किया
आप देखिये आप बहुत सारे आपके दोस्तों को लगेगा
जैसे आप जादूगर हैं क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड से आप गिनती कर सकते हैं वेदिक मैथमेटिक्स की
बहुत सरल टेकनिक्स हैं और आजकल वो ओनलाइन पर भी अवेलेबल होते हैं
क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो बहुत
सी नईनई चीज़ें भी आप दे सकते हैं
अच्छा उस्मान आप खाली समय में क्या करते हैं
खाली समय में सर कुछनकुछ लिखता रहता हूँ मैं
मुझे लिखने में बहुत इंटरेस्ट आता है
अरे वाह मतलब आप मैथमेटिक्स में भी रूचि लेते
हैं लिटरेचर में भी रूचि लेते हैं
क्या लिखते हैं कविताएँ लिखते हैं शायरियाँ लिखते हैं
कुछ भी करेंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो उस पर लिखता रहता हूँ
नयीनयी जानकारियाँ मिलती रहती हैं जैसे जीएसटी चला
था और हमारा नोटबंदी सब चीज़
अरे वाह तो आप कॉलेज की पढाई करने के लिए
आगे का क्या प्लान बना रहे हैं
कॉलेज की पढाई सर मेरा जी मेन्स का फर्स्ट अटेम्प्ट
क्लीयर हो चुका है और अब मैं सप्टेंबर के लिए सेकंड अटेम्प्ट में अब बैठूंगा
मेरा मैन एईएम है कि मैं पहले ईआईटी से पहले बैचलर डिग्री लूं और उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाऊँ और एक आईएएस बनूँ
अरे वाह अच्छा आप टेक्नोलॉजी में भी रूचि लेते हैं
इसलिए मैंने इत ओप्ट किया है फर्स्ट टाइम बेस्ट ईआईटी
अच्छा चलिए उस्मान मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं
हैं और आपका भाई शरारती है तो आपका समय भी अच्छा जाता होगा और आपके माताजीपिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिये
उन्होंने आपको इस प्रकार से अवसर दिया हौसला बुलन्द किया और ये मुझे अच्छा लगा कि आप पढाई के साथसाथ करेंट इश्यूज पर अध्ययन भी करते हैं और लिखते भी हैं
देखिये लिखने का फायदा ये होता है कि आपके विचार में शार्पनेस आती है
बहुतबहुत अच्छा फायदा होता है लिखने से
तो बहुतबहुत बधाई मेरी तरफ से
थांक यू सिर
आइये चलिए फिर एकदम से नीचे साउथ में चले जाते हैं
तमिलनाडु नामाक्कल से बेटी कनिग्गा से बात करेंगे और कनिग्गा की बात तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है
कनिग्गा जी वडक्कम वड़कम
वडक्कम वड़कम सिर
होव एआरई यू
फाइन सिर
फर्स्ट ओएफ अल्ल आई वाउल्ड लाइक टो कांग्रेचुलेट यू फोर यूर
ग्रेट सक्सेस
थांक यू सिर
व्हेन आई हियर ओएफ नमक्कल आई थिंक ओएफ थे अंजनेयर
नोव आई विल अलसो रिमेंबर माय इंटरेक्शन विथ यू
येस सिर
सो कांग्रेचुलेशंस अगैन
थांक यू सिर
यू वाउल्ड हेव वर्क्ड वेरी हार्ड फोर एक्साम्स होव वास
यूर एक्सपीरियंस व्हाइल प्रीपेयरिंग
सिर वे एआरई वर्किंग हार्ड फ्रॉम थे स्टार्ट सो आई didnट
एक्सपेक्ट थिस रिजल्ट बट आई हेव वृत्तें वेल सो आई गेट आ गुड रिजल्ट
व्हाट वेरे यूर एक्सपेक्टेशन
485 ओर 486 लाइक थाट आई थाउट सो
सो व्हाट इस थे रिएक्शन ओएफ यूर फैमिली मेंबर्स यूर
थे वेरे सो हैपी एंड थे वेरे सो प्राउड सिर
व्हिच ओने इस यूर फेवराइट सब्जेक्ट
मैथमेटिक्स
ओह्ह एंड व्हाट एआरई यूर फ्यूचर प्लांस
आईm गोइंग टो बीकम आ डॉक्टर आईएफ पॉसिबल इन एएफएमसी सिर
एंड यूर फैमिली मेंबर्स एआरई अलसो इन आ मेडिकल
प्रोफेशन ओर सोमव्हेयर एल्से
नो सिर माय फादर इस आ ड्राइवर बट माय सिस्टर इस स्टडीइंग इन
एमबीबीएस सिर
अरे वाह सो फर्स्ट ओएफ अल्ल आई विल डीओ थे प्रणाम टो यूर
फादर व्हो इस टेकिंग लोट ओएफ केयर यूर सिस्टर एंड यूरसेल्फ
इतs ग्रेट सर्वाइस हे इस डोइंग
येस सिर
एंड हे इस इंस्पिरेशन फोर अल्ल
सो माय कांग्रेचुलेशंस टो यू यूर सिस्टर एंड यूर
फादर एंड यूर फैमिली
थांक यू सिर
साथियो ऐसे और भी कितने युवा दोस्त हैं कठिन परिस्थितियों में भी जिनके हौसलें की जिनकी सफलता की कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं
मेरा मन था कि ज्यादासेज्यादा युवा साथियों से बात करने का मौका मिले लेकिन समय की भी कुछ मर्यादाएं रहती हैं
मैं सभी युवा साथियों को यह आग्रह करूँगा कि वो अपनी कहानी अपनी जुबानी जो देश को प्रेरित कर सके वो हम सब के साथ जरुर साझा करें
मेरे प्यारे देशवासियो सात समुन्द्र पार भारत से हजारों मील दूर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है सूरीनाम
भारत के सूरीनाम के साथ बहुत ही करीबी सम्बन्ध हैं
सौसाल से भी ज्यादा समय पहले भारत से लोग वहाँ गए और उसे ही अपना घर बना लिया
आज चौथीपांचवी पीढ़ी वहाँ पर है
आज सूरीनाम में एक चौथाई से अधिक लोग भारतीय मूल के हैं आई क्या आप जानते हैं वहाँ की आम भाषाओँ में से एक सरनामी भी भोजपुरी की ही एक बोली है आई इन सांस्कृतिक संबंधों को लेकर हम भारतीय काफ़ी गर्व महसूस करते हैं
हाल ही में श्री चन्द्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के नये राष्ट्रपति बने हैं
वे भारत के मित्र हैं और उन्होंने साल 2018 में आयोजित पर्सन ओएफ इंडियन ओरिजिन पियो पार्लमेंट्री कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था आई श्री चन्द्रिका प्रसाद संतोखी जी ने शपथ की शुरुआत वेद मन्त्रों के साथ की वे संस्कृत में बोले
उन्होंने वेदों का उल्लेख किया और ॐ शांति शांति शांति के साथ अपनी शपथ पूर्ण करी
अपने हाथ में वेद लेकर वे बोले मैं चन्द्रिका प्रसाद संतोखी और आगे उन्होंने शपथ में क्या कहा उन्होंने वेद का ही एक मंत्र का उच्चारण किया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
इदमहमनृतात सत्यमुपैमि
यानी हे अग्नि संकल्प के देवता मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूँ
मुझे इसके लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें
मुझे असत्य से दूर रहने और सत्य की ओर जाने का आशीर्वाद प्रदान करें
सच में ये हम सभी के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है
मैं श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बधाई देता हूँ और अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्हें शुभकामनायें देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो इस समय बारिश का मौसम भी है
पिछली बार भी मैंने आप से कहा था कि बरसात में गन्दगी और उनसे होने वाली बीमारी का खतरा बढ़ जाता है अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ जाती है इसलिए आप साफ़सफ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दें
इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह लेते रहें
कोरोना संक्रमण के समय में हम अन्य बीमारियों से दूर रहें
हमें अस्पताल के चक्कर न लगाने पड़ें इसका पूरा ख्याल रखना होगा
साथियो बारिश के मौसम में देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से भी जूझ रहा है
बिहार असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में तो बाढ़ ने काफी मुश्किलें पैदा की हुई हैं यानी एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ये एक और चुनौती है ऐसे में सभी सरकारें एनडीआरएफ की टीमें राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें स्वयं सेवी संस्थाएं सब एकसाथ मिलकर जुटे हुए हैं हर तरह से राहत और बचाव के काम कर रहे हैं
इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है
साथियो अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे उसके पहले ही 15 अगस्त भी आने वाला है
इस बार 15 अगस्त भी अलग परिस्थितियों में होगा कोरोना महामारी की इस आपदा के बीच होगा
मेरा अपने युवाओं से सभी देशवासियों से अनुरोध है कि हम स्वतंत्रता दिवस पर महामारी से आजादी का संकल्प लें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें कुछ नया सीखने और सिखाने का संकल्प लें अपने कर्त्तव्यों के पालन का संकल्प लें
हमारा देश आज जिस ऊँचाई पर है वो कई ऐसी महान विभूतियों की तपस्या की वजह से है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया उन्हीं महान विभूतियों में से एक हैं लोकमान्य तिलक
1 अगस्त 2020 को लोकमान्य तिलक जी की 100वीं पुण्यतिथि है
लोकमान्य तिलक जी का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है
हम सभी को बहुत कुछ सिखाता है
अगली बार जब हम मिलेंगें तो फिर ढ़ेर सारी बातें करेंगे मिलकर कुछ नया सीखेंगे और सबके साथ साझा करेंगें
आप सब अपना ख्याल रखिये अपने परिवार का ख्याल रखिये और स्वस्थ रहिए
सभी देशवासियों को आने वाले सभी पर्वों की बहुतबहुत शुभकामनायें
बहुतबहुत धन्यवाद